यहाँ पर यह स्कूल क्लासरूम है स्कूल में और यहाँ पर क्लासरूम इसमें बेंच पड़ी है।

और यहाँ पर सामने की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है और ऊपर की तरफ लाइट है और पंखे हैं और इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं।

और वहाँ कुर्सी रखी है और कुछ दो-चार मोटरसाइकिल भी खड़ी हैं और एक जमेटो की भी गाड़ी खड़ी है।

और यहां पे कुछ और समान भी है बहोत सारे लोग यहां पे हैं।

यहाँ बहुत सारे गमले रखे हुए हैं पेड़ लगे हैं एक बाइक खड़ी हुई है यहाँ पर।

और वहाँ पे ए_ सी_ लगा हुआ है और बल्फ जल रहा कैमरा भी लगा हुआ है वहाँ पे।

और कुछ बच्चे ऊपर की तरफ स्टेज पर खड़े हैं यहाँ पर जो है प्रोग्राम हो रहा है।

यह एक प्लेग्राउंड है बहुत बड़ा और यहाँ पर जो है प्ले यहाँ पर जो है कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं।

यहां पर ये रेस्टोरेंट है और यहां पर मेज लगी है लंबी सी और उसके चारों तरफ यहां पर कुर्सियां रखी है।

और यहाँ पे एक दो तीन चार पाच छह सात आठ--

आठ दस जो है मिस बी लोग हैं यहां पर जो काम कर रहे हैं।

अ कुर्सी हैं यहाँ पे जो है दीवाल से सटे हुए सोफे रखे हुए हैं।

एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लड़की ने बहुत सुंदर--

और यहां पे एक आदमी है जो ताबू ढोलक बजा रहा है उनके सामने एक माइक रखा हुआ है और यहां पे स्टेज जो है बहुत से फूलों से सजाया हुआ है जगह जगह फूले लगे हैं।

और उधर सामने की तरफ कुछ केले हैं यहाँ पे पपीते हैं नारियल पानी है।

और प्लस का निशान है और यहां पर लिखा है आत लीवर व पेट रोग विशेषज्ञ--

और यहाँ कुछ हरे-हरे भी पेड़-पौधे हैं और यहाँ फूल भी हैं यहाँ।

और पेड़ों के नीचे छाया है और कुछ थोड़ी जगह पर धूप है और यहाँ पर ज्यादातर सूखी घास है और कुछ हरी घास भी है।

पतला सा है और उसमें भी सी जाने के लिए है और यहाँ पे लिखा हुआ है साइबर कैफे।